अ लोग तैर रहे है किसी में डबल है किसी में सिंगल है और पानी सफ़ेद तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हल्का मैला दिखाई--

ईट बनता है वहाँ ए ईट को ढँकने के लिये इस पन्नी के जरुरत पड़ता है और कुछ काम होता है तो भी पड़ता--

ये राजधानी बस सर्विस है ये सी_जी टेन बिलासपुर वाला बस है ये सफेद रंग का है।

ये प्रयागराज वाला बस है ये सिंगल --

ये लोहे का वर्कशॉप है यह पर लोहा लगा हुआ है।